ये इमेज किसी स्कूल या कॉलेज की है जहाँ पर कुछ बच्चे अपने पैरेंस के साथ बैठे हुए है।

ये इमेज किसी स्विमिंग पूल की है जहाँ पर एक स्विमिंग पूल बना हुआ है व कुछ गेम्स भी दिखाई दे रहे हैं।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

यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है कुछ लोग भी जा रहे हैं ये बिल्डिंग रोड साइड बनी हुई है जो कि अलग-अलग रंगों की लाइटिंग से डिजाइन की गई है।

ये बिल्डिंग किसी राष्ट्रीय संस्थान से जुडी हुई है जोकी कौशल नगर निगम में लिखा हुआ है इस पर बोर्ड लगे हुए हैं।

ये बंद है यहाँ पर शटर लागी हुई है ताला लगा हुआ है यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई दे रहा रही है एक सफेद और ब्लू कलर के पेंट से बनी हुई एक बिल्डिंग है।

ये चित्र किसी तालाब का है जहाँ पर पानी भरा हुआ है तालाब के चारो ओर पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत सुन्दर लग रहे हैं।